यहाँ पर हर प्रकार के शेक भी मिलते हैं यह दुकान आइसक्रीम की बहुत ही अच्छी दुकान है।

यह भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लग रहा है।

यह बीच बहुत ही बड़ा और सुंदर लग रहा है।

इस गुफ़ा को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं यह गुफ़ा बहुत ही अच्छी है।

इस गार्डन के गेट की दीवारे बहुत ही अच्छी लग रही है यह गार्डन के अंदर एक शिवाजी महाराज का स्टेचू है जोकि बहुत ही सुंदर लग रहा हुआ है।

यह एक स्टेडियम है यह स्टेडियम बहुत ही बड़ा और सुंदर लग रहा है।

यह एक पेट्रोल पंप है यह पेट्रोल पंप बहुत ही अच्छा और सुंदर लग रहा है इस पेट्रोल पंप में बहुत से लोग आते हैं इस पेट्रोल पंप में जाकर हमें पेट्रोल प्राप्त होता है यह पेट्रोल पंप बहुत ही अच्छा पेट्रोल पंप है।